प्ले ग्राउंड है बड़ा-सा। बिल्कुल खाली मैदान है। बहोत ही क्लीन है। यहाँ पे कोई कचडा-वचडा नही डला है। पेड़-पौधे लगे हुए हैं यहाँ पे और बिल्डिंगस बनी हुई है। एक --

और इंस्टिट्यूट भी है।

और पेड़ लगे हुए है कुछ आदमी पीछे से देख रहे है और ये इस आदमी ने ब्लूथूज टाँगे हुए है गले में जो की रेड कलर के हाथ में बोटल लिए है।

क्रोस वाला है। अ गले में लॉकेट पहनी हुई हैं और चश्मा लगाये हैं और व्हाइट कलर की स्टूडेंट की ड्रेस है। ब्राउन कलर --